यह एक नदी है यह नदी में बहुत ही पानी है यह नदी में पूल बनी हुई है यहाँ पे बहुत सारे पानी --

यह एक इस स्कूल है। यह इस स्कूल बोहोत बड़ा है। यह इस स्कूल में सभी लड़की यूनिफार्म पहन के यहाँ पे आई हुई है। और सभी लड़की झुण्ड बना कर--

इस स्कूल में पढ़ाई करने के लिए आते हैं। इस इस स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं।

यह एक भारतीय डाक है यह छपरा हेड पोस्ट ऑफिस है यहाँ ए.टी.एम. से पैसा निकाला जाता है ।

पेटीएम से आए हुए है यहाँ पर बिजली के खंभे भी दिखाई दे रहे है ।